डेकोरेशन के लिए फूल को टांग दिया गया है |

और इन्ही के पास में कुछ बड़े पेड़ भी नजर आ रहे हैं ।

जिनके आस-पास में कुछ पौधे भी लगे हुए है जिनमे फूल आए नजर आ रहे है।

जिसके नीचे बहोत सा पानी इक्क्ठा हुआ है।

कुछ घास भी दिखाई दे रही है।

जो कि काले कलर के पत्थर से बना हुआ है।